और बहुत ही लम्बा कॉलेज है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है।

यह एक महजिद का फ़ो उम्म उम्म महजिद है और एक दो तीन चार तला महजिद है और-- ।